यहाँ पे बहुत सारे दवाईया पड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे मकान दिखाई दे रहा है जिसके दीवार की कलर व्हाइट ग्रीन और रेड है।

यहाँ पे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारा पानी भरा हुआ है और ब्रीज भी बना हुआ दिखाई दे --

इ बल्ब भी लगा हुआ है और यहाँ पे --

यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है बहुत सारी बसे दिखाई दिखाई कलर व्हाइट ब्लू और रेड और यहाँ पे एक मकान भी दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर रेड --

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर व्हाइट पिंक और ग्रीन है यहां पे एक कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक हवन कुंड टाइप का बना हुआ है जिसका कलर येलो और रेड है | यहाँ पे घास भी उगी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है ।

ये एक बिजली के खम्भे भी दिखाई दे रहे है उनमे लाइट लगी हुई दिखाई दे रही बाउंड्री भी उठी हुई दिखाई दे रही है और रोड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ --

येलो व्हाइट है और यहाँ पे एक टेबुल रखी हुई जिसके ऊपर बहुत सारी प्लेट भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे जग भी रखा हुआ है।